हमे यहाँ पर सीडी भी नजर आ रही है हमे यहाँ पर गमले भी नजर आ रहे है हमे यहाँ पर बांस के खम्बे भी नजर आ रहे है हमे यहाँ पर रोड भी नजर आ रही है हमे यहाँ पर पाइप भी नजर आ रहा है हमे यहाँ बालटा बालटी भी नजर आ रहे है।

ये देखिए यहां पर एक स्टेज बनाया जा रहा है यहां पर स्टेज बन रहा है यहां पर सुर्य दिख रहे है यहां पे पड़ पर कंप्यूटर हुआ है।

यहां पर हमे एक स्टेज नजर आ रहा है यहां पर हमे व्हाइट व्हाइट कपड़ो में धोती कुर्ते में आदमी लोग नज़र आ रहे है हमे यहां पर पगड़ी लगाए हुऐ आदमी नजर आ रहे हैं।

यहां पर कुछ दुकान दिखाई दे रही है दुकान लगाया हुआ है बोरा फेक रहा है काफ़ी सारे बर्तन दिखाई दे रहा हैहमे दे रहा है।

देखिये हमे यंहा पैर दुकान दिख रही है हमे दिखाई दे रही है हमे यंहा पर रेड कलर का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

हमे यहाँ पे एक वाइट कलर का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें एक बॉक्स भी रखे हुए दिखाई दे रहे है अंदर लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है यहाॅं पर बैग वगेरा भी टंगा हुआ है यहाॅं पर चिप्स-कुरकुरे भी टंगे हुए है।

एक यहां पर हम एक बोर्ड नीचे हमें कुछ नजर आ रहा है लोहे का यहां पर हमें फोर व्हीलर भी दिखाई दे रही है।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

तो हमे एक ब्लू कलर का यहाँ पर हमे एक ब्लू कलर का रिक्शा दिखाई दे रहा है बेटरीवाला और जहाँ पे बैठते है वहां पे येलो कलर का दिखाई दे रहा है ब्लू सीट और ब्लू रिक्क्षा दिखाई दे रहा है यहाँ पर बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

हमे यहाँ पर बिजली के वायर भी दिखाई दे रहे है हमे यहाँ पर आसमान भी दिखाई दे रहा है हमे यहाँ पर पेड़ भी दिखाई दे रहे है यहा पर हमे कुछ दुकान कुछ घर भी दिखाई दे रहे है ऊँचे -ऊँचे--